यह एक मैदान का दृश्य है।

यहां पर बहुत सारी ट्रॉली भी रखे हुए हैं जिसमें सामान रखा हुआ है।

और सीलिंग बल्ब भी जल रही है।

छोटे छोटे पौधे भी लगाए हुए हैं एक बड़ा सा पेड़ भी है।

नदी के अंदर और यह पानी का कलर हल्का ग्रीन में है।

यह एक क्लासरूम का दृश्य है जहां पर बहुत सारी बेंचे लगी हुई है।

और एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें पानी का बोतल बहुत सारे सामान भी रखे हुए हैं।

यह एक सेवेन हेवन कैफे है।

और साइड में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारे तार नजर आ रहे हैं।

यह एक डैम का दृश्य है।

जहां पर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं।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

जहां पर बहुत सारी चट्टानें हैं पानी भी गिर रहा है ।

और काई लगा हुआ है बहुत सारे पत्ते उगे हुए हैं।

तो खड़ा है एक आगे की ओर बढ़ रहा है।

सर पर हाथ रखा हुआ है यहां पर बहुत सारे बोतल भी रखे हुए हैं बुक्स रखे हुए।